सभी अपने पेशेंट्स को दवाईया लिख रहे है जो भी मरीज आए हुए है जिनको कोई बीमारी या कुछ भी है।

एक बोहोत ही सुंदर-सा प्राकृतिक झरना है।

एक सुंदर सा बगीचा है जहाँ पे फूलों की क्यारिया बनी हुई हैं।

येलो एंड वाइट के कॉम्बिनेशन मे सजाया गया है।

अ आ रहे हैं जा रहे हैं।

अलग-अलग तरह की दुकाने है।

पानी का रंग हरा और ब्लू मिक्स है।

अ आप रुक सकते हो रेस्ट हाउस है और शादियों के लिए भी --

अ छोटी-छोटी अ बनी हुई हैं घरों जैसा कुछ आकृति है आसमान है।

वहाँ पे एक ग्वाला है जो बाल्टी लेकर के --

और ये लोग फुटबॉल खेल रहे है।

कास दि कश्मीर फाइल मूवी रिलीस हुई है।

नाव अ रानी नाव के ऊपर खड़ा है जिसमे --

जहां पे लोग खड़े होकर के देखकर कुछ बाते कर रहे है एक लड़का लकड़ियां उठाकर ला रहा है।

और स गेट से घुसते ही सीढ़िया बनी हुई है।

जनरल स्टोर है सैमसंग का स्टोर है।

एक बिल्डिंग है जिसमे एक पोस्टर लगा हुआ है टिकट घर --